यहां पर घासे भी लगी हुईं हैं।

एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है।

अंकल के हाथ में कार वॉश करने के लिए कोई कपड़ा है।

लोहे की विंडो बनी हुई है।

नीचे दरी बिछी हुई है।

ये कोई पिकनिक स्पॉट दिख रहा है।

जो येलो कलर की पुती हुई है।

ये एक जंगल का सीन दिख रहा है।

बना हुआ है उसके ऊपर सब्जियां भाजियां रखी हुई हैं।

बैंक के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।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

जोकि वाइट कलर की है।

ये एक मंदिर दिख रहा है।

ये एक गार्डन दिख रहा है।

आने जाने के लिए रास्ता भी बनाया गया है।

फार्म हाउस बाहर का सीन दिख रहा है।

किराने की शॉप दिख रही है।

जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है।

एक दीवार वॉलपेपर लगा हुआ है।

बड़ा सा बेड भी लगा हुआ है उस पे वाइट कलर की चादर बिछी हुई है।

यहां पर कांच के गेट लगे हुए है।

अंदर एक अंकल भी खड़े हुए हैं।

और ज्वेल्रियाँ भी दिख रही हैं।

यहाँ पर लकड़ी की शेल्फ बनी हुई है।

कुछ लोग भी आते जाते दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत अच्छे-अच्छे पेड़ दिख रहे हैं।

ए_टी_एम का सीन दिख रहा है।

ये एस_बी_आई ए_टी_एम लग रहा है।

यहां पर बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

और बच्चे योगा कर रहे हैं।

और शेड भी डले हुए हैं।

और येलो कलर के परदे लगे हुए हैं।

जो रेड और ब्लैक कलर के हैं।

शटर लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

और बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

जो अंदर की तरफ जा रहे हैं।

एक लड़का बैठा हुआ मोबाइल देख रहा है।